इस चित्र मे एक जंगल नजर आ रहा है।

रखी नज़र आ रही हे।

नज़र आ रहे है।

स्टेट बैंक का ए_टी_एम